पर्ल में कमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
पर्ल में कमेंट्स
मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
जो है पर्ल रिविजन 5 वर्जन 14 और सबवर्जन 2
मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में कंपाइलिंग निष्पादन औऱ वेरिएबल्स का बुनियाद ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में कोड के भाग को दो तरह से कमेंट कर सकते हैं
single line सिंगल लाइन
multi line मल्टि लाइन
इस प्रकार के कमेंट का उपयोग किया जाता है जब यूजर कोड के सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहता है या
कोड के भाग की कार्यक्षमता को समझाने के लिए एक लाइन के टेक्स्ट को जोडना चाहता है
इस प्रकार का कमेंट # hash सिंबल के साथ शुरू होता है
यहाँ एक डेमो है टेक्स्ट एडिटर में एक नई फाइल खोलें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit comments dot pl space &
फिर आपको याद दिलाता हूँ कि ampersand का उपयोग टर्मिनल में कमांड प्रोम्प्ट को मुक्त करने के लिए किया जाता है और एंटर दबाएँ
अब निम्न कमांड्स को टाइप करें
hash declaring count variable एंटर दबाएँ
dollar count space equal to space 1 सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
print स्पेस डबल कोट्स count is dollar count slash n क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन स्पेस hash prints count is 1
अब इस फाइल को ctlr s दबाकर सेव करें और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें perl hyphen c comments dot pl और एंटर दबाएँ
यह हमें यह बताता है कि यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है
अब टाइप करें perl comments dot pl और एंटर दबाएँ
यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा count is 1
gedit पर वापस जाएँ
gedit में पहली लाइन पर जाएँ और एंटर दबाएँ
पहली लाइन पर वापस जाएँ और निम्न कमांड टाइप करें
hash exclamation mark slash usr slash bin slash perl
पर्ल में इस लाइन को shebang लाइन कहते हैं और पर्ल प्रोग्राम में यह पहली लाइन होती है
यह बताता है कि पर्ल इंटरप्रेटर कहाँ ढूंढे
ध्यान दें हालांकि यह लाइन हैश सिंबल के साथ शुरू होती है यह पर्ल द्वारा सिंगल लाइन कमेंट के रूप में नहीं माना जाएगा
अब मल्टिलाइन कमेंट्स को देखते हैं
multi line इस प्रकार के कमेंट का उपयोग किया जाता है
जब यूजर कोड के भाग को कमेंट करना चाहता है या कोड के भाग का विवरण/उपयोग जोडना चाहता है
इस प्रकार का कमेंट equal to head सिंबल के साथ शुरू होता है और equal to cut के साथ समाप्त होता है
gedit पर वापस जाएँ और निम्न को comments dot pl फाइल में टाइप करें
फाइल के अंत में टाइप करें equal to head एंटर दबाएँ
print स्पेस डबल कोट count variable is used for counting purpose क्लोज डबल कोट एंटर दबाएँ
equal to cut
फाइल सेव करें इसे बंद करें और पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
टर्मिनल पर टाइप करें perl hyphen c comments dot pl और एंटर दबाएँ
सिंटेक्स एरर नहीं है
अतः perl comments dot pl को निष्पादित करें
यह पहले की तरह ही आउटपुट दिखायेगा count is 1
यह count variable is used for counting purpose वाक्य को प्रिंट नहीं करता है
यह इसलिए क्योंकि हमने equal to head और equal to cut का उपयोग करके भाग को कमेंट किया है
आप या तो =head =cut या =begin =end का उपयोग कर सकते हैं
ये पर्ल द्वारा उपयोगित विशेष कीवर्ड्स नहीं है
कृपया ध्यान दें यहाँ = to चिन्ह से पहले और head cut begin या end शब्द के बाद आगे या पीछे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए
एक बार फिर से टर्मिनल खोलें
और टाइप करें gedit commentsexample dot pl space & और एंटर दबाएँ
निम्न कमांड्स को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ मैं दो वेरिएबल्स firstnum और secondnum को घोषित कर रहा हूँ और उनके लिए कुछ वैल्यूज निर्दिष्ट कर रहा हूँ
तब मैंने यहाँ इस भाग को कमेंट किया है
अब मैं इन दो नंबर्स को जोडूँगा और addition नामक तीसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू निर्दिष्ट करूँगा
अब मैं प्रिंट कमांड का उपयोग करके वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ
फाइल सेव करें औऱ टर्मिनल पर पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टर्मिनल पर टाइप करें perl hyphen c commentsexample dot pl एंटर दबाएँ
यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है
अतः perl commentsexample dot pl
को टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें एंटर दबाएँ
यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा addition is 30
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
यहाँ हमने सीखा पर्ल में कमेंट्स जोडना
नंबर के स्क्वेर को पता करने के लिए पर्ल स्क्रिप्ट लिखना
सिंगल लाइन कमेंट और मल्टि लाइन कमेंट का उपयोग करके कोड की कार्यक्षमता को समझाना
निम्न link पर उपलब्ध video देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करने और देख सकते हैं
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @ spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
आशा करता हूँ कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ